जब भी मन कहे किसी का भी तो अपने पैसे जाकर वापस निकाल सकते हैं।

यह एक मटन की दुकान है इस मटन की दुकान पर--

पहाड़ों पर बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं।

यहां पर बहुत से लोग घूमने टहलने के लिए आते हैं।

यह एक बहुत ही बड़ा पत्थर है इस पत्थर पर इंसानों द्वारा बनाया गया बहुत ही--

बहुत सी दवाइयां मिलती है हर एक तरीके की दवाइयां मिलती हैं।

यह एक स्विमिंग पुल है इस स्विमिंग पुल में--

स्विमिंग रेस के लिए बनी हुई है जिसमें--

यह एक खुला मैदान है इस खुले मैदान में--

लोग आते हैं रोजाना पूजा करने के लिए इस मंदिर में भगवान जी की पूजा की जाती है।

नीचे से ऊपर को ले जाने में सहायता करता है।

लीबीस्टिक जैवलेर्स स गले में पहनने के लिए--

इस कार को बहोत ही अच्छे से सजाने के लिए एक आदमी को भी किया जाता है जो की बहोत ही अच्छे से सजाता है।

ज्यादा चलता है यहां पर गर्मी में बहुत से लोग आकर रोजाना--

लेते हैं इस गिटार को बजाने के लिए क्लास करना पड़ता है सीखना पड़ता है ट्यूशन करना पड़ता है।

यहां एक कपड़े की दुकान है इस कपड़े की दुकान पे --

यह एक रेलवे स्टेशन है इस रेलवे स्टेशन में बहुत सारी ट्रेने आया जाया करती है।

ट्रेनों से बहुत से लोग यात्रा करते हैं।

पैर में पहनते हैं जूते कपड़े को पहनते हैं अपने घर को ले के जाते हैं।

दिखाई दे रहा हैं इस किनारे पे घर भी है जो--

बस इसका कार्ड रहना चाहिए आपके पास इससे जब मन कहे तब --

जो आपकी पैसों की सुरक्षा करेगा।

इस खात बैंक से अ जुड़े होते हैं।

टहलने दौड़ाने और उस घोड़े के ऊपर बैठ गए--

यहां पर बहोत से तरीकों के फूलों को बेचा जा रहा है यहां पर बहोत से तरीकों के फूल है इस दुकान --

यह एक पतली की दुकान है यहां पर पतली--